यहाँ पर किताब हेगा ढ़ेर सारा किताब है और यहाँ पर एक घर है एक दु --

दुकान हैक्य दरवाजा हैक्य और --

पन्नी में जे में है और यहाँ पे शैम्पूर हके और यहाँ पर पाउडर ह --

कुर्सी पर बैठएल हेय एने एक लड़का हके और एने पर जाय हले एक लड़ --

ये क्रिसमस डे का पहन लिया है और स क्रिसमस डे अइसन ना नाचेगा यहाँ पर क्रिसमस डे मना --

और उतार देल के ओकरा अपन जगह पर और ओकरा पैसा दे रहले और वहां पर इ --

यहां पर एक लड़का एक मर्दाना चाय पी रहले और यहां पर ग ग रंगल हके।